उसके आगे बहुत सारे बाइक और साइकल पार्क किया हुआ है।

धूप के कपड़े सुखाय गए हैं।

दिन का समय और नीला आसमान दिख रहा है।

और यहां पे बल जले हुए हैं।

बस खाते भी है इसकेज पेन है पानी की बोतल भी है।

और यहां पे बहोत सारे आदमी सब देख रहे हैं।

यह एक हॉल है जिसके नीचे कारपेट बिछाया गया है।

यहां आगे एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है।

आगे एक आदमी दिख रहा है।

और साइड में स्टैंड वाला लाइट भी लगा है।